यहाँ एक डांस क्लास है यहाँ कुछ बच्चे और बच्चियां खड़ी हुई हैं यहाँ सफ़ेद कलर के टाइल्स लगे हुए हैं।

ब्लैक कर की बाइक है पीछे कुछ पेड़ भी लगे हुइ --

इसमें ऊपर कुछ लाइट भी लग रही हैं यहाँ एक बहुत ही सुन्दर --

चेयर भी रखी हुई है बाहर और नीचे दरी बिछी हुई है बहुत ही --

चोटी भी बनी हुई है सामने थोड़ा अ खिड़कियाँ दिख रही हैं गेट बना हुआ है।

जेंट्स खड़े हैं कुछ कार्टून दिख रहें हैं निचे ग्रीन ग्रीन धुंवा दिख रही है।

इसमें ये बहुत अच्छी इमारत दिख रही इसमें ऑरेंज कलर का पेंट पोता हुआ है ये व्हाइट --

ये एक बस स्टॉप लग रहा है यहाँ बहुत बड़ी बस है उसमें वातानुकूलित --

निचे मे टाइल्स लगी हुई है ऊपर ब्लैक कलर की लाइटिंग भी दिख रही है।

यह बहुत ही उंचाई इस पर है इसने तीन तीन इसमें सीढ़ी जैसा लग रहा है।

यहाँ एक मंदिर है इसमें ये अभी बन रहा है और उसके बाहर एक साइकिल खड़ी हुई है इधर ब्लैक कलर का।

यह एक फेडरल बैंक ए.टी.एम. है यहाँ ब्लैक कलर का पेंट है इस पर ये --

एक बा आकासवी दिख रहा है बड़ी-सी दो इमारत भी लग --